चारों आदमी अपने हाथों से स्टिक से बोट को हिला के पानी के बीच मे ले जा रहे है।

पानी के अंदर बत्तख का एक पैर ऊपर दिख रहा है हरा घास बोहोत ही प्यार लग रहा है ये।

यहाँ पर एक आदमी फोटो खिंचा रहा है आदमी के साथ एक बच्चा भी है बच्चे अपने --

ये एक मैरेज हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर फंक्शन भी हो रहे हैं यहाँ पर गणेश जी के बहुत बड़ी प्रतिमा का फोटो भी लगाया गया है।

ये एक स्विमिंग ये एक स्विमिंग पूल लग रहा है।

पीला रंग का कागज रखा हुआ है यहाँ पर बहुत बच्चे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक सरकार द्व्ररा आधार इन्वॉलमेंट का दिख रहा है।

यह एक स्टेशन का फोटो लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे आदमी अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहां पर एक लेडिज अपनी बच्ची को खाना भी खिला रही है।

चाट मे प्याज भी डाले गए है धनिया पत्ती मटर स्पून --

यहाँ पर बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर केला सेब अंगूर नारंगी नाशपाती बहुत सारे अंगूर है यहाँ पर काले रंग के ब्लैक रंग के।